सामने में एक तबेला दिख रहा है।

अंदर भी कस्टमर दिख रहै हैं।

एक बॉक्स दिख रहा सामने--

और खिड़किया दिख रही हैं सामने ऊपर की तरफ--

सामने एक बड़ा-सा जिम सेंटर दिख रहा है।

पेड़ पोधे दिख रहे गमले दिख रहे हैं यहाँ पर एक नली दिख रही है पानी --

एक पेड़ पेड़ दिख रहा सामने की तरफ --

सामने एक कुरकुरे पाउच दिख रहे है।

और खुला आसमान दिख रहा है पेड़ - पोधे दिख रहे है।

सामने यहाँ पर एक स्कूल दिख रहा है।